और पिली जर्सी वाले और नीली जर्सी वालों का ये मैच है।

तथा इसमें कुछ अअ हमें ये ऑडियन्स भी दिख रही है।

की ये तीन मंजिला बिल्डिंग है जो कि पहाड़ों के बीचो में हैं।

यानि की थोड़ा बारिश का मौसम लग रहा है जिससे खिलाडियों को राहत मिलेगी खेलते वक्त।

ये काफी स्वादिष्ट भी लग रहें हैं चटपटे से थोड़े।

और एक महिला भी है जिसने अपना मुँह ढका हुआ है और वो भी फ़ोन का प्रयोग कर रही है।

दोस्तों ये तस्वीर श्री देव सुमन उत्तराखंड उनिवर्सिटी की है जो की टिहरी गढ़वाल के चम्बा के एरिया की साइड की है।

ये इसके गेट की तस्वीर है इसके बगल में ये इनका गार्ड-पोस्ट है।

साथ ही में इसमें बगल में एक कैंप का बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहाँ पे काफी सारे डम्ब्बेल और डम्ब्बेल प्लेट्स रखें हुए हैं।

दोस्तों जैसा की ये तस्वीर में हमको दिख रहा है की ये कोई सिनेमा हॉल है।

जो की काफी सुन्दर भी दिख रही है और सरसों भी काफी अच्छा दिख रहा है इसमें।

हमारे पर्वत हैं साथ ही में हमें हिमालय की काफी सुंदर-सुंदर सफ़ेद-सफ़ेद अ पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं।

दोस्तों जैसे की इस तस्वीर में हमको दिख रहा है की ये कुछ लड़के हैं जोकि वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर दो कोर्ट हैं वॉलीबॉल के एक खाली है --

और ये प्लेन नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हज़ार फूट ही ऊंचाइयों पे है।

दोस्तों जैसे की ये तस्वीर में हमको दिख रहा है की ये किसी ईमारत का लेंटर डलने से पहले --

साथ ही में एक कार भी खडी है। और दुकाने भी हैं शायद यहीं पे और ये --